पे गाड़ियां चल रही हैं। कुछ खड़ी है कार ।

और कही-कही बड़े-बड़े पेड़ भी दिखाई दे रहे है इस साइड सामने के साइड काफी बड़े-बड़े पेड़ है ।

यहाँ हम सब देख पा रहे है के एक रोड है। रात का समय है। रोड पे अ एक रिक्शा कार टेम्पा जा रहा है। और काफी कार खड़ी है साइड में |

यहाँ पर सब हम देख रहे हैं कि एक पतंजलि टेस्टी नमकीन ढाबा है और जिसपे एक टेबल है। रेड कलर का कपड़ा बिछा हुआ है। कुछ लेडीज खड़ी है।